बिल्डिंग के पास एक छोटी सी दीवार है।

जिसमें तीन सिलेंडर रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है।

जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यह एक क्लास की पिक्चर है।

जेम्स ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पेहना हुआ है।

इसके पास तीन लोग खड़े हैं और थोड़ी दूर पर एक आदमी बैठा है इसके पास सरिया पड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

इसके बाहर एक काउंटर पड़ा हुआ है।

और नाई कटिंग कर रहा है।

सड़क बहुत दूर तक जाती हुईं दिखाई दे रही हैं।

यह एक लैब बनी हुई है इसमें बहुत सारी चेयर रखी हुई है।

लैब के ऊपर अलमीरा बनी हुई है जिसमें दवाइयां रखी हुई हैं।

यहां एक डियर सफारी के नाम से जगह दिखाई दे रही है।

पास में ही एक पौंड बना हुआ है साइडों में दीवारों पर पास पौधे लगे हुए हैं।

यहां एक कैफे दिखाई दे रहा हैं।

एक्टिवा खड़ी हुईं हैं जिनका कलर अलग अलग हैं।

और सीढ़ियां चढ़ने के लिए बनी हुई हैं।

और पानी दिखाई दे रहा है लाइटें दिखाई दे रही हैं पानी के अंदर सामान तैर रहा है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां नीचे कारपेट बिछा हुआ है कारपेट के ऊपर कुछ रखा हुआ है।

जिसमें तरह तरह के फल रखे हुए हैं।

और एक ब्ल्यू कलर का कैरेट पड़ा हुआ है एक ब्लैक कलर का कैरेट के ऊपर फ्रूट रखे हुए हैं।

और यहां दो आदमी खड़े हैं एक आदमी काउंटर के अंदर और एक आदमी काउंटर के बाहर खड़ा है।

बेंचेज और चेयर लगी हुई है।

एक अध्यापिका बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही है।

यहां डांस फ्लोर दिखाई दे रहा है।